यहाँ पास बहुत सारे लाइट के बहुत सारे पानी सुरसुरी फेक रहे है यहाँ पस कुछ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने वाला है जैसे लग रहा है यहाँ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और यहाँ पस बहुत सारे लाइट दिखाई दे रहे है।

पत्थर बहुत ही सु खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ का नजारा इतना सुंदर है कि मुझे जाने का मन कर रहा है और यहाँ के पत्थर बहुत ही नुकीले दिखाई दे रहे हैं ।

धोखे जो की बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के कपड़े--

यहाँ पर बहुत सारे बैनर लगाए गए हैं और साथ में बैनर गाड़े भी गए हैं।